यह तस्वीर चित्रांश ट्रैक्टर ऑटो पार्ट्स --

सारे ऑटो और कार खड़े हुए--

आ है। इसके किनारे रोड है।

इस तस्वीर में एक शादी का मंडप नजर आ रह--

काफी लोग नजर आ रहे हैं।

जिसमें एक आदमी घुसता हुआ दिख रहा है।

इसका नाम राजपूत दवाइयां मेडिकल स्टोर है।